यह किसी स्कूल की --

फील्ड लग रही है जिसमें बहुत सारी पेयर हैं।

यह एक शॉप कपड़े की शॉप दिख रही है।

कहीं पार्क की एंट्री गेट दिख रही है।

ठेला भी दिख रहा है एक पेड़ दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें एक मैकेनिक दिख रही हैजो कि एक ऑटो को ठीक कर रहा है।

यह तस्वीर एक मिस्त्री को दर्शाती ह।

इसमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

एक चेयर दिख रही है और ऊपर सी_सी_टी_वी कैमरे भी है।

और यह दीवार बहुत ही खूबसूरत दिख --

इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो कि बहुत खूबसूरत है।

यह तस्वीर बहुत ही खूबसूरत दिख रही है।

इसमें डेकोरेट बोहोत मस्त किया गया है।

जो कि बहुत ही बेहतरीन।

है इसके आगे एक --

इसमें एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि लाइन उत्पन --

कुछ पेंस भी दिख रहे हैंजो कि बहुत ही कलर की लग रही है।

यह तस्वीर किसी स्कूल की लग रही है।

और एंट्री गेट बहुत मजबूत दिख रही है।

और ये घर बहुत ही दो दो मंजिला है।

यह तस्वीर किसी बनते हुए मकान को दर्शा रही है।

रेस्ट रूम अअअ एक पेड़ भी दिख रहा है।

दो लाइटें नजर आ रही है बहुत ही बेहतरीन है।

यह फोटो किसी मॉल की दर्शा रही हे ।

वो दोनों बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने हुए हैं।

अच्छे हैं अच्छे-अच्छे हैं कुछ प्राइस भी लिखे हुए हैं।

एक एसी लगी हुई है एक पंखा है।

यह फोटो किसी सेलिब्रिटी को दर्शा रही है।

एक गेट रखी गेट दिख रही है।

नीचे फर्स्ट दिख रही हैजो कि ब्लैक।

और एक डाक घर की बैनर लगी हुई है जो कि रेड कलर की है और वाइट कलर की है।

इसकी दीवारे पे छड़ लगा हुआ है।

और हाथ से कुछ बताना चाह रही है।

और इसमें बहुत ही सारी लाइट लगा रखी है।

दो गाड़ियां लगी हुई हैंजिस पे सामान लोड है।

एक बाइक दिख रहा हैजिस पे जिसमें हवा भरा जा रहा है।

एक लोग बाइक पे बैठे हुए हैं दो लोग साइड में बैठे हुए हैं।

और इसमें कुछ लाइटेड लगी रखी है जो कि रात में बहोत ही लाइट करेगी इसके पीछे एक घर बन रहा है।

यह तस्वीर किसी पार्क को दर्शा रही है।

बहुत ही अच्छी तरह से ट्रैक बनाया गया है रनिंग के लिए।

और कुछ अन्य प्रकार की सामानें रखी गई हैं।

बेहतरीन लग रही है इसमें पहाड़ के छोटे-छोटे चट्टान लग दिख रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे लोग बाजार करने आए हुए हैं।

और एक टेबल है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सजाई गई है।

इसमें कुछ लोग भोजन के लिए आए हुए हैं।

कुछ टेबल रखी गई हैं।

इसमें लाइट लगा रखी है बहुत सारी --

वो कुछ फोटोज लगा रखे हैंजो कि बहुत ही अच्छी-अच्छी दिख रही है।

कुछ घर दिख रहे हैं जो कि वाइट कलर की है।

घासे नजर आ रही है जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं।

एक सीढ़ी दिख रही है जो कि रेड कलर से रंगी गई है।

अपना फोटोशूट करवा रहे हैं कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं।